एक बगीचा है जिसमें बहुत साढ़े पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

एक लेडी है जो इन पौधों की देखभाल करती है इन्हें टाइम से पानी देती है --

और यहां पर कुछ बैठने के लिए भी बनाया हुआ है जिससे हम लोग --

से डांस सिखाए जाते हैं बच्चों को --

रखा हुआ है लाइफबॉय भी है लाइज़ोल भी है।

जिसमें मैच होने वाला है --

नजर आ रहे हैं और कुछ लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं।

जिसमे बहुत सारे रिश्तेदार मेहमान लोग --

खड़ा है पत्थर पे दीवाल के सहारा देकर और एक पैर और एक --

वॉशरूम करने आते हैं --

एक लड़का है जो हाफ शर्ट ब्लू कलर का और ब्लैक जींस पेहने हुए है।

पिंक कलर के कुर्ते में मालिक बैठा हुआ है और एक औरत से बात कर रहा है।

एक कुर्सी पर लाल शर्ट और जींस पहन के एक माली बैठा हुआ है।

दो भाई हैं जो नदी किनारे --

बोट के पास खड़ा है दोनों ने वाइट शर्ट --

एकने वाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहने हुए हैं --

और वह खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं पानी बहुत --

चाय नाश्ते की और उसमें भी --

ब्लू कलर का डेकोरेशन है --

रेड कलर का वॉल है दीवाल है --

और यह बहुत बड़ा पेड़ के नीचे --

चारों तरफ से घिरा हुआ है --

एक वाइट कलर का मस्जिद है।

बहुत से हैंड वॉश करने के लिए --

यह एक शादी का माहौल है।

शादी का वेन्यू है एक होटल है।

खाना वाना खाकर लाइटिंग भी है डेकोरेशन भी है।

दीवाल पे बहुत सारी चीज --

बनाया गया है पानी इसमें बहुत है --

उसके नीचे बहुत बड़ा समुद्र है --

शांति है बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं --

साम का समय है --

यह एक मुसलमान का घर है घर के नीचे --

और यहां लोग टहलने आते हैं शाम को और --

यहां तीन व्यक्ति हैं एक --

और दो चाय पी चुके हैं --

और इसका बैनर का नाम है आर के कॉफी स्टॉल --

और वो लोग एक किनारे से दूसरे किनारे --

और स्कूल बहुत ही छोटा है --

जिसके बाहर बहुत सारे --

यहां एक कोचिंग है तेलगु के नाम तेलेगु --

यह एक वाटर पार्क का सीन है।

रहा है और बस एंजॉय कर रहे हैं --

बहुत से युवक लड़का लड़की --

बहुत लोगों ने कपड़े नहीं पहने हैं --

बहुत बड़ा पहाड़ है बहुत बड़ी चट्टानें हैं।

पेड़ बहुत लगे हुए हैं पहाड़ों के बीच-बीच --

यहां शादी का वेन्यू है जो खुले ग्राउंड में किया गया है डेकोरेट --

सूरज भगवान को अढ़ग देने के लिए --

और ढाबा के बाहर दो गाड़ी --

यह एक वेटिंग एरिया है।

रेसपनीक पे एक पर्सन है।

यहां पे तीन चप्पल रखे हुए हैं।

जिसमें किराने का शामान मिलता है।

हमारी जरूरत का सामान मिलता है।

और दुकान में अभी कोई --

जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

और इस पहाड़ को देख रहे हैं --

और लाइट भी लगी हुई है --

जहां पे पैसेंजर को --

बहुत लोग यहां पे लगेस लेके खड़े हैं।

एक सब्जी की दुकान है फुटपाथ पे जिसमें बंधा --

यहां तराजू पटखाड़ा बोतल में पानी सब रखा हुआ है।

यह एक झांकी निकल रही है।

लोग बहुत जुटे हुए हैं दर्शन करने के लिए --